ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमे मुझे घंटा लटका दिखाई दे रहा है। नीचे से खाली रोड दिखाई दे रहा है। एक बुड्डी के बार वाला जाता दिखाई दे रहा है।

आदमी येलो कलर { के कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। औरतें मुकुट लगाई हुए दिखाई दे रही हैं। सामने उनके कुछ समान दिखाई --}

मुझे एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। घर के नीचे रोड दिखाई दे रहा है। रोड के एक तरफ बोहोत सारी गिट्टी डाली हुए हैं। सीमेंट बनाने वाली मशीन दिखाई दे रही है।